इत देखत हई की कउनौ मंदिर वांदिर लगत बा हमके।

शायद देखत हवन कि पेड़ वेड़ भी एकदम हरा हरा बा। घास भी हरा हरा बा। चारों तरफ हरियाली ह।